यहाँ पे बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है वाइट कलर के --

बहुत सारा सामान सामने की तरफ भी टंगा हुआ है एक टेबल रखी है जिस पर काफी सामान रखा है।

प्लास्टिक की क्रेट रखी है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स की कांच की बॉटल्स रखी हुई है।

एक और टेबल रखी जिस पर कंप्यूटर रखा है दो-तीन टेबल्स यहाँ पर रखी हुई है।

कुछ डायरी रखी है प्लास्टिक की वाइट कलर की चेयर रखी है ब्लैक चेयर भी है --

यहाँ पर एक स्कूल है जो वाइट कलर का है जिसमें बाहर की तरह बहुत सारी --

यहां पर बहोत सारी बिल्डिंगें बनी है सामने एक बिल्डिंग है जो ग्रीन कलर की है जिस पर--

वाइट ब्लैक पोस्टर लगा हुआ है सामने ब्लू और वाइट कलर के बलून से डेकोरेशन किया गया है जहाँ पर बहुत से --

लोग खड़े हैं सामने रोड है रोड पर बहुत सी यहाँ पर बाइक खड़ी है कचरा पड़ा हुआ है साइड में एक और बिल्डिंग है जिस पर --

रखी हुई है पूरे हॉल में वाइट कलर की चेयर रखी है जिस पर गोल्डन कलर की पट्टी बंधी हुई है।

यहाँ पर एक शॉप है वाइट कलर --

ऑरेंज और ब्लू कलर की बहुत सी झालर लगी हुई है शाइनिंग वाली आगे की तरफ बहुत सा --

ग्राउंड खाली है वहाँ पर येलो कलर की बस खड़ी है।

रेड कलर का है जिसमें एक ब्राउन कलर का गेट लगा है लो --

और सामने मिट्टी का ढेर लगा हुआ है रेलवे लाइन का ट्रैक निकला--

पड़ा हुआ है एक जे_सी_बी मशीन है साइड में कुछ हरियाली है जगह खाली--

सामान अलग-अलग बॉक्स में रखा हुआ है।

अंदर से वाइट और ऊपर लाइट ग्रीन कलर की हैं इसका जो सामने फ्रंट गेट हैं--

पीछे भी यहाँ पर कुछ ले लोग खड़े हैं नीचे से पानी बह रहा हैं सामने से ही--

सुनहरा मौसम है क्योंकि यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं हैं।

और सामने रेड वाइट कलर का पोस्टर लगा है सामने से रोड है रोड पर से बाइक जा रही है।

कुछ प्लास्टिक की दलिया रखी है जिसमें प्रोडक्टस रखे हुए है आस पास और भी चेयर लगी हुई है बहोत से लोग हैं इस शॉप में--

यहां पर एक नदी है नदी में बहोत सी नाव है।

उस पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं और दो-तीन लोग यहाँ खड़े हैं।

और नदी में कुछ कबूतर उड़कर जा रहे हैं पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है।

और इन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं पानी की बोतल्स रखी हैं सामने एक प्लास्टिक का--

यहाँ पर बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है आसपास कुछ--

लोग खड़े हैं सामने एक टेबल रखा है जिस पर वाइट कार्पेट बिछी है।